हमें कुछ ईसाई धर्म ममम की मीटिंग लगी हुई दिखाई दे रही है जो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है बहुत ही अच्छा सुशील सुन्दर सजा हुआ है।

यहाँ पर एक मकान दिखाई दे रहा हैं और वो मकान बोहत ही सुन्दर लग रहा है।

आकाश भी दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है ये एस.इ.सी.ऐल भवन बिल्डिंग पर लिखा हुआ हैं।

हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा फील्ड बना दिखाई दे रहा है उस फील्ड में बिजली के खम्बे लगे हुए है बल्ब भी लगे हुए है कुछ छोटे पौधे लगे हुए है कुछ बड़े पौधे लगे हुए है सड़क भी निकली हुई है।